यह एक जिम का दृश्य है यहां पे बहुत सारी लाइटें लगाई गई हैं।

यहीं पे बहोत सारी चीजें भी रखी गई हैं।

यहां पे बहुत सारे वृक्ष हैं एवं पौधे भी हैं।

या एक अमूल नवोदय इंटरप्राइजेज का दुकान है।

यहां पे बहुत सारी चीजें मिलती है।

यहां पे एक व्यक्ति है जिन्होंने गले में एक गमछा रखा हुआ है।

यह एक क्लास रूम का दृश्य है यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए--

यहां पे बहुत सारी पौधे भी लगाए गए एवं कुछ घांसे भी है।

ये एक स्विमिंग पूल का दृश्य है यहां पे बहुत सारी बृछ लगाई गई हैं जैसे कि नारियल की।

यह एक महिला के डा डांस का दृश्य।

ये एक योगा क्लासरूम का दृश्य है।

आसमान बहुत ही नीला और बादल से छाया हुआ नजर आ रहा है।